बेल लगे हुए है कुछ चोटी पर पौधे तो कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

जहा बोत सुन्दर तरीके से कटिंग किया गया है और कुछ कुड्सिया भी--

इस दुकान का और यहाँ पर उसके अगल बगल पास में उसके छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ एक सरकारी ऑफिस नजर आ रहा है जहां पर एक दो बूढ़े बुढ़ अ बूढ़े बुड्ढे बुढ़िया बैठी होगे हैं कुर्सियों पर और अपना काम करवा रहे हैं आ--

और एक आदमी भी खड़ा हुआ है जिसने टी शर्ट पहन रखी है उसका चेहरा दिखाई नहीं जान पड़ रहा है।

और वहा पे बोहोत मुझे जमीन भी बोहोत साफ सुधतरी नज़र आ रही है यहां पे पेड़ पौधे है एक पेड़ भी नज़र आ रहा है जिसकी हरी हरी पत्तिया कुछ पीली पीली पत्तिया भी दिखाई दे रही है ।

मुझे यहां पे रेलवे स्टेशन का नज़र आ रहा है जहा पर बोहोत सारे यात्री रेल का ट्रैन का इंतज़ार कर रहे है यहां पे मुझे बोहोत सारी दुकाने भी नज़र आ रही है।

कुर्सिया है सफेद कलर की कुर्सिया और टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ अ आ उम काफी लड़के अ खड़े हुए दिखाई दे रहे है जो की सामान--

मुझे यहा पे एक शॉप नजर आ रही है जहा पर उपर एक बोर्ड लगा हुआ है इसको जो इस पर--

इकरम ढाबा के नाम एम लिखा हुआ है और निचे उसके चिकन मटन फिश --

लिखा हुआ है जो की सारी चीज़े इस पर बेचीं जाती है यहाँ पर मुझे दो लड़के नज़र आरहे है एक दुकानदार--

है जोकि कड़ाही में कुछ तल रहा है और एक लड़का और बाहर की साइड में खड़ा हुआ है जोकि खरीदने का खरीदता हुआ नज़र आ रहा है।

मुझे मुझे यहां पर एक फैक्ट्री टाइप की दिखाई दे रही है। जहां पर बहोत गारमेंट्स टाइपस का जहां पर बहोत सारी मोटरसाइकिल खड़ी एक साइड लाइन में लगी हुई है।

यहां पर एक चंडीगड़ का एक ऐसी जगह है जहा पे बोहोत सारे अ हम्म बोहोत सारे घूमने के लिए एक तरीके से जाते है ये मैन गेट ये मैन गेट है वहा पे --

गाइस यहाँ पे बह जहाँ पे बीच में देखिये बहुत तरीके से सुंदर तरीके से छटिंग किया हुआ पेड़ पौधों को किया गया हैं और यहाँ पर --

यहाँ पे बैठने का भी स्थान जगह जगह पे बनाया गया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे यात्री बैठ सकते हैं और नीचे देखिए एक--

यहाँ पर एक चंडीगढ़ का ये स्कूल है जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बोर्ड पे लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है राजकीय--

और लाइटें लगी हुई हैं ऊपर पहले देखिए बहुत सुन्दर तरीके से यहाँ पे यहाँ पर लाइटों को सजाया गया है और खिड़कियों को भी--

यहाँ एक बहोत सुंदर सा गार्डन दिखाई दे रहा है जहा पर बहोत सारी बिल्डिंगे है और सफेद कलर से पेंट है और बहोत सारे।

कुछ जगह पर जो जमीन है कुछ अच्छी तरीके से कुछ घनी घन घास भी लगी हुई है बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है मोटर साइकीले भी --

मुझे यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे कल ये अ येलो कलर के और ऑरेंज कलर के और लाल कलर के यहां पे--

जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे अ इटे भी दिखाई दे रही है लाइन से और एक बहुत बड़ा पेड़ पौध अ --

मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के उम साइकीले ही साइकीले नजर आ रही है जो की बेचने के लिए रखी हुई है सभी साइकिलों पे --

पैकिंग किया गया है और कुछ छोटी साइकिलें भी नज़र आई जिनको छोटे छोटे बच्चे चलाया करते हैं ऊपर के साइड में कुछ--

मुझे यह घर बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है। जहां पे रेलिंग भी रखा हुआ है।

जीना भी गया हुआ है ऊपर भी रीलिंग है छत भी है बहोत सुंदर तरीके से इस घर में कम को--

डेकोरेशन किया गया है और बहुत सुंदर तरीके से जिसने भी बनवाया बहुत अच्छे रहने के लायक बनवाया हुआ है नीचे सोफा भी है।

अ अं जैसे कि टाट पट्टी रखा रहता हैं और यहां प एक रेलिंग भी है जोकि--

मुझे यहा पर एक घर मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहा पे कुछ--

यहां पे एक खेल माहौल दिखाई दे रहा है जहा बोहोत बच्चे फिसर पट्टी लगा हुआ है जहा बच्चे खिसकते है वो फिसल पट्टी लगा हुआ है और --

खेलने के लिए और इंजॉय करने के लिए लगा हुआ है और कुछ दिन--

ये एक पेट्रोल पंप पर एक लाइन पेट्रोल के लिए लगी हुई है गाड़ी जिसमे पेट्रोल डलवाया है यहाँ पर देखिये--

मुझे यहाँ एक सडक दिखाई दे रही हैं जहाँ पर एक आदमी साइकिल से जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं एक मज्जित भी दिखाई दे रही हैं बहुत बड़ी सी --

मुझे यहाँ पे एक गार्डन दिखाई दे रहा है बहोत बड़ा घास मैदान का यहाँ पे हिरन ही है हिरन नज़र आरहे है जो की--

यहा दुसरे के साथ में खेलते हुए दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है और छोटे--

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ जमींन हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नही हैं वहां पे हिरन ही हिरन नजर आ रहे हैं और एक दुसरे के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सुंदर तरीके --

सॉरी यहाँ पे दूध बेचा जाता है यहाँ पर एक नी बाहर की साइड मे एक काउन्टर भी लगा हुआ है आज कांच का जहां पे मिठाई भी दखी हुई--